कुछ बच्चे फिसलपट्टी से कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं एक लड़का ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने हुए खड़ा दिखाई दे रहा है।

हाँ मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के नीचे भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग के ऊपर बिजली के बोहोत सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक लड़की दिखाई दे रह है उसने बहुत बुरी तरीके से मुँह बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल में कुछ बच्चे अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे है| एक टीचर दिखाई दे रहा है जो बच्चो को तिलक लगाते हुए दिखाई दे रहा है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है उसमे जिला सहकारी मर्यादित लिखा हुआ है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है और कुछ लोग शायद दूल्हा दुल्हन के वेश मे सजे हुए पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है।